अच्छा है देखकर अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर बहोत से लोग हैं और यहाँ पर सब लोग कर रहे है। ऊपर में बोहत बादल हैं।

यहाँ पे बहोत सारे लोग अथी कर रहे हैं और अथी हैं और यहाँ पे बहोत से लोग बेच रहे हैं और यहाँ पे बहोत से लोग यहाँ पे बेच रहे हैं तीन चार पांच छह --

ई ये अथी जहां पे झूला झूल रही है एक लड़की और यहां पे अथी हैं जहां पे अच्छा लग रहा है देख कर क्यूंकि अथी है।

और यहां पे अच्छा लग रहा है देख के और यहां पे हरा-भरा है। इधर गाड़ी सब जा रहा हैं उधर अथी हैं उधर हरा-भरा बोहोत पेड़ अच्छा नज़र आ रहे हैं।